एक दिया जल रहा है जो बाती लगी हुई है।

मंदिर है सफ़ेद कत्थई रंग का अगल-बगल पेड़ पौधे हरी पत्ती घंटी लटकी हुई है गार्डन है जो हरी घास है कुछ आदमी बैठे हुए है एक दो औरतें खड़ी है जो एक पीले रंग लाल रंग के कपड़े सफ़ेद रंग के कपड़े पेहने हुई है।

मंदिर है सफ़ेद रंग की ऊपर में मंदिरे है एक खम्बा गाड़ा हुआ है जो ये नीले सफ़ेद और भूरे रंग की है।

साइड पर ऑटो खड़ी है जो काले रंग की ऑटो है बगल में एक कार खड़ी है जो सफेद रंग की कार है बस भी खड़ी हुई है एक छोटा-सा ठेला है जो पानी की बोतल रखी हुई है सामने पोस्टर लगी हुई है जो पीले रंग की है।

दीवाल है जो उम्म ब्लू रंग की है लाइटें जल रही हैं नीचे साइड पे टाइल्स बिछा हुआ है ए.के. बाल्टी रखी गई है जो सफेद रंग की है।

ये पुतले खड़े हुए हैं। उपर छत है जो सफ़ेद रंग का है लाइट लगी गई दरवाजा बना है जो की कांच लगी हुई है एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जो की काले रंग का है बाहर पेड़-पौधे हरी पत्तीया हैं नीचे टाइल्स बिछा है जो सफ़ेद रंग के टाइल्स हैं।

सब में एक साइड पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो गद्दे बिछे ऊपर लाइटें जली हुई हैं सफेद रंग के पंखे लगे हुए हैं।

परदे है जो कथाई रंग के है घर बने हुए सफेद रंग की है और खंबे गड़े हुए है सफेद रंग की लाइट लगी हुई है तार लगी हुई सफेद रंग का आसमान--

कुछ गाड़ी चल रही है जो काले रंग की है एक कार खड़ी है सफेद रंग की बगल में एक ऑटो जा रही है काले रंग की--

घर बने हुए है जो हरे रंग की है ऐरोप्लेन है पेड़ पौधे हरे रंग के पत्ते सफेद और नीले रंग के आसमानी खंभे गड़े हुए है जो सफेद रंग की है।

एक टेडी बेयर दिया गया है एक पेड़ है जो लाल रंग के फूल उगे हुए हैं।

फि- फिसलन पट्टी दी गई है जो लाल रंग की है बगल में दीवार है सफेद रंग का पेड़-पौधे हरे पत्ते सफेद और नीले रंग के आसमान है।